काफी कुछ हरे भरे पेड़ ओर काले खेत भी नजर आ रहे हुए है।

ओर नहर में काफी सुन्दर पानी भरा हुआ है।

ओर दुकान के बाहर काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ।

ये काफी बड़ा हॉल है और जिसमें हम देख सकते है काफी सुंदर--

ओर सामने भी दरवाजा कांच का ही है ओर सामने शटर भी लगी हुई है ।

जैसे कि दुर्गा जी हुईं शंकर जी पार्वती जी हुए --

और भी काफी सारे आइटम्स नजर आ रहे है साईं बाबा हुए --

और साइड में ही एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है और कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं।

और बहार मकान के आप देख सकते है काफी सुंदर --

और ए अच्छा बड़ा सा गेट भी लगा हुआ हैं।

और अंदर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और गेट के ऊपर देख सकते है कुछ पक्षी वगैरा भी बैठे हुए हैं।

और काफी सारे हरे भरे पेड़ भी नज़र आ रहे है।

जाली के अंदर आप देख सकते हो काफी सारे --

और साइड में ही कुछ लोग मोमबत्तीयां जला रहे हैं।

और लहंगा वगैरा भी रखे हुए है डमी पहने हुए हैं।

और एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ हैं।

और एक आदमी नीचे बैठा हुआ है और दुकान के बाहर काफी सारे --

जोकि रसगुल्ले वगैरा लड्डू मिठाई वगैरा भी रखी हुई है।

ये आप देख सकते है संतरा का पेड़ है।

और पक्के कच्चे सभी प्रकार के संतरे लगे हुए हैं पेड़ में --

और काफी सुंदर कुर्सियां भी डली हुई है बैठने के लिए --

और इस साइड एक कार खड़ी हुई है जिसमें डीजल भराया जा रहा होगा।

काफ़ी सुंदर लाइट भी लगी हुई है पेट्रोल पंप में --

और कुछ लोग स्वागत के लिए साइड ओ में खडे हुए हैं।

ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें आप देख सकते हैं।

गर्ल्स एंड बॉयज बैठे हुए है एक साइड गर्ल्स और एक साइड बॉयज और सामने भी एक --

और और मात्रा में कुछ ब्रेड वगैरा भी रखे हुए हैं।

और बीच में कुछ उन लोगों ने जाली और झोला जैसा रखा हुआ हैं और कुछ लकड़ियां भी रखी हुई हैं।

और अंदर पानी में उतरने के लिए सीढ़ीयां बनाई गई हैं और कुछ लोग खड़े हुए है बहार --

और बहुत सारे पत्थर भी है जो कि --

और आप रास्ते में देख सकते है कि काफी सारे लोग पैदल भी चल रहे है कुछ साधनों से भी चल रहे हैं और सामने --

और यहाँं पर साइड में एक गाड़ी भी पार्क है और यहाँं पर कैरेट में कुछ बोटले वगैरा रखी हुई हैं।

यह सामने एक बड़ा सा स्कूल है जो कि कॉलेज --

और काफी छोटे बड़ेपह पेड़ पौधे हैं और सामने पहाड़ भी नज़र आ रहा हैं।

काफी सारे मात्रा में पत्थर पड़े हुए हैं यहां पर --

और कुछ मशीनें यहां पर भी रखी हुई है कवड़ में --

ये एक बड़ी सी दुकान है जिसमें कुछ गेट और खिड़कियों की जाली वगैरा--

बनाई जाती हैं बाहर जो लगे हुए हैं और बाहर स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है जो कि ये भी बिकती है यहां पे--

और साइड में ही एक बाउंड्री की दीवार है जिसके बीचों बीच क बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ हैं।

और आप दीवार देख सकते हैं बिना प्लास्टर पुताई के हैं।

और कुछ लोग बाहर घूम रहे है और पुल के बाहर आप देख सकते हैं।

और आप देख सकते है वहां पर एक बस भी खड़ी हुई है सामने--

ये आप देख सकते है बड़ा सा होल है जिसमे केबिन बाय केबिन बने हुए है और केबिन में कमपूटर और काफी सारे पेपर्स वगेरा --

इसके बहार काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है बिल्डिंग प एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ हैं।

आप देख सकते है ये एक छोटा सा टॉल टैक्स बना हुआ हैं।

ये एक बड़ी सी दुकान है जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारे --

जिसमें आप देख सकते है काफी अलग अलग प्रकार की साइकिले रखी हुई हैं।

और काफी सारे लोगबाग लेडीज ह घूम रही हैं।

भारी और सामने बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं।

और हॉल में काफी सुंदर लाइटिंग लगाई गई है और दीवार पर भी काफी सुंदर पेंटिंग हैं।

और दीवार पर दो फैन भी लगे हुए हैं एक ऐ_सी भी लगा हुआ हैं।

और उस साइड एक कैबिन बना हुआ है जिसमें दो कुर्सियां पड़ी हुईं हैं।

और साइड में आप देख सकते है ऊपर जाने के लिए काफी सुंदर सीढ़ियां गयी हुई हैं।

और कुछ कपड़े वगैरा थान वाले जो कपड़े आते है वो रखे हुए है।

और एक जेन्ट्स खडा हुआ है और कुछ काउन्टर भी बने हुए है।

वह साइड में आप देख सकते हैं कुछ फ्लैट भी खाली पड़े हैं जिनमें काफी सारी गंदगी है।

आप देख सकते है ये एक ब्रेकरी है यहां पर कुछ ऊपर रोल भी रखे हुए है।

आप देख सकते है ये काफी बड़ा शोरूम है यहां पर--